जिम में एक लड़का है जो कि जिम कर रहा है वाइट कलर की टी-शर्ट पहना हुआ है लोवर पहना है जिम में है।